इस फोटो में आप नारियल के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारी मात्रा में पेड़ हैं और --

बहुत अच्छा दिख रहा है एक विंडो भी दिख रही है बनी हुई बाउंड्री बनी हुई है।

और वो लोग उनके हाथ में बुक्स रखी हुई है।

और इसमें खंबे पे लाइट जल रही है पेड़ पौधे लगे हुए हैं और गाड़ियां रखी हुई है बहुत ही अच्छा व्हिव भी दिख रहा है नाइट

यह फोटो आप जो दिखाई दे रहा है आपको वह फोटो किसी कॉलेज की बिल्डिंग का फोटो दिख रहा है।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

फ्लोर भी बहुत ही अच्छा टाइल्स लगा हुआ है।

टाइल्स लगा हुआ है बाजू से फ्लावर गमले भी लगे हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल का फोटो दिख रहा है जो कि नीट एंड क्लीन दिख रहा है।

घास से भी उगी हुई घास से भी लिखा गया है और व्हाइट कलर से भी कलर से भी लिखा गया है।

देख रहे हो आप पोस्टर --

इस फोटो में बहुत सी गर्ल्स बैठी हुई है बैठकर रांगोली बना रही हैं।

जिसमें कलर भर रही हैं और बहुत सुंदर रंगोली तैयार होगी बनने के बाद --

बहुत ही अच्छा सीन मालूम हो रहा है।

बहुत बड़ा ग्राउंड है इसमें स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल से रिलेटेड --

यह पेड़ पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं और खंबे में लाइट भी लगा हुआ है।

और प्रेयर कर रहे हैं --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

यह एक अर्बन कट हेयर सलून का फोटो दिखाइ दे रहा है जिसमें अर्बन कट के डिजाइन से हेयरकट किया जाता है।

और उसके बाहर एक गार्डन दिख रहा है पेड़ पौधे नज़र आ --

इस फोटो में आपको एक हॉल का फोटो दिख रहा है जिसमें बहुत से लोग बैठे --

बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि वह लोग कुछ --

और बहुत ही सुंदर लग रही है ब्लू कलर से पेंट किया गया है महरून बॉर्डर बनी हुई है।

ये एक कोई शॉप का फोटो दिख रहा है जिसमें --

और बहुत बड़ी शॉप दिख रही है इसका नाम क्रीधा बिल्डकॉन एल.एल.पी. है।

इस फोटो में एक गार्डन का फोटो दिख रहा है जिसमें पेड़ दिखाई दे रहा है दो गमले रखे हुए हैं।

यह एक आपको जो शॉप दिखाई दे रही है यह बुक शॉप दिख रही है जिसमें बहुत सारी कॉपी बुक्स रखी हुई है।

उसे बड़े पर्दे पर अभी व्हाइट स्क्रीन दिख रही है।

जो कि उसमें मूवी दिखाई जाती है बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है नीचे से ऊपर तक।